यहाँ पर ए एक दुकान जैसा है यहाँ पर कुर्सी है गुब्बारा टांगा हुआ है यहाँ पर पोस्टर --

यहाँ स्कूल दिखाई दे रहा है जो व्हाइट एण्ड रेड से रंगा हुआ है उसके नीचे में हरा हरा पौधे लगे हुए है रोड्स --

ये दुकान है जहाँ बहोत सारे पैरदान दिख रहे है यहाँ बहुत रंगीन रंगीन दिख रहे है नीला पीला गुलाबी--

लकड़ी दिखाई दे रहा है पल्ला दिखाई दे रहा है प्लेट दिख रहा है टीने का डिब्बा दिख रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।